और उसके आगे कुछ पानी पड़ा हुआ है और उस पर एक स्टील की ग्रिल लगी हुई है।

यह एक मैदान है जिसके अंदर दो गधे खड़े हुए हैं।

और एक बिजली का बोर्ड भी लगा हुआ हैं और कुछ गमले भी रखे हुए हैं।

और पीछे एक मोटरसाइकिल पर आदमी भी हैं और पास में कुछ बिजली के खम्भे भी लगे हुए हैं।

और इसके अंदर कुछ लड़कियांये है और कुछ लड़के भी खड़े हुए हैं।

यह एक चाय की दुकान है जिसके बाहर एक काउंटर रखा हुआ है।

जिस पर बहुत सा सामान रखा हुआ है।

इस काउंटर के पास में दो लड़के भी खड़े हुए हैं।

यह एक गोदाम है जिसके अंदर बहुत से आदमी खड़े हुए हैं।

जिसके अंदर एक स्टील की ग्रिल भी लगी हुई है।

और इसकी छतों में कुछ लाइटें भी लगी हुई हैं।

और दीवार पर तो फायर बी टंगे लगे हुए हैं।

और इस ऑफिस के अंदर कुछ पंखे लटके हुए हैं।

और कुछ शीशे के गेट भी लगे हुए हैं।

और कुछ कलर की कुर्सियां भी रखी हुई है।

और इसके अंदर बहुत से चेयर भी रखे हुए हैं।

और इस दुकान के बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

और इसके अंदर कुछ पुतले भी खड़े हुए हैं।

इसके अन्दर बहोत सा सामान रखा हुआ है।

यह एक टेस्टिंग लैब है जिसके अंदर कुछ कांच का सामान रखा हुआ है।

और इसमें कुछ घास भी जमा हुआ हैं।

और गेट के पास में कुछ मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है।

और इस दुकान के अंदर बहोत सी राखियां रखी हुई है।

और इसके अंदर बहोत सी कुर्सियां रखी हुई है।

और उसमें दो खिड़कियां भी लगी हुई हैं।

यह एक आलू की मंडी है जिसके अंदर बहोत से बोरी में आलू रखे हुए हैं।

और उनके पास में कुछ आदमी भी खड़े हुए है।